ये चित्र किसी क्लब का लग रहा है जहाँ पे चार लड़कियाँ डांस करती हुई नजर आ रही हैं।

ये चित्र मे दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहां पर काफी गर्दी दिखाई दे रही है यहां से लोग गुजर ते नजर आ रहे है और यहां पे शायद होली भी खेली गई है।